ये एक जिम है ये फिटनेस के लिए ये लोग यहां पर आए थे ये एक्सरसाइज खत्म करके अपनी एंजॉयमेंट करके ये अब अपनी तस्वीर खिंचवा रहे हैं इन्होंने आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़े और इनके पीछे --

ये एक रामभारा पराठा की पराठे की स्टॉल है यहां पर यहां पर बहुत ही मजे के पराठे मिलते हैं इसी के स्टॉल का कलर रेड है।

रेड रंग के तकिए रेड एंड ब्लैक कलर के तकिए पड़े हुए हैं और फर्श पर रेड कलर का क्लीनर पड़ा हुआ --

पहाड़ बहोत ऊंचे हैं यहाँ पर लोग सरोतफरी के लिए आते हैं --

ये दुकान के ऊप अं साथ ही एक स अस दुकान के--